यहाँ हरे रंग का मैदान है। मैदान में चटाई बिछाकर कई लड़कियां योगा कर रही हैं। उन्होंने तिरंगा --

इस दृश्य में एक मस्जिद दिखाया गया है। मस्जिद के ऊपर बड़ी-बड़ी मीनारे नजर आ रही हैं और उनमे भी लगा हुआ है।

इसमें व्यायाम की बहोत सारी चीजे नीचे और अगल-बगल दिखाई दे रही हैं। एक लड़का जिसका पिछे से भाग दिखाई दे रहा है। वह व्यायाम कर रहा है।

यहाँ ही बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ एक गोल चबूतरे पर एक बड़ी सुंदर महिला की मूर्ती बनाई गई है। उस --

यह दृश्य किसी सिनेमा हॉल का है। यहाँ नीले-नीले बल्ब जल रहे हैं और कई कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

सारी बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे छोटी-छोटी दीवार नजर आ रही हैं।